अंदर एक व्यक्ति छोटा बच्चा खड़ा है जो फोटो क्लिक कर रहे है पीछे दीवार पर आईना लगा हुआ है आइने मे पीछे सामने की तरफ बैठे हुए व्यक्ति दिखाई दे रहे--

प्लस के आइकॉन पर व्यक्ति को लटकाया गया है जिसमे खिश्चन के देवता है।

शाम का समय है सनसेट हो रहा है कुछ रोड के किनारे पर बहुत सारे टावर है तथा एक कार गुजर रही--

एक अ आईसक्रीम का ग्लास रखा हुआ है जिसमे बहुत सारे आईसक्रीम चॉकलेट रखे हुए है नीचे टिशू पेपर तथा उसके उपर टीबी लिखा हुआ है।